दूध होता है जिसमें दूध और गोला को और यहाँ पर छोटे-छोटे गोले टाइप के लगाये जाते हैं। इसकी जो डिज़ाइन बनाई जाती है यह एक कारीगरी द्वारा बनाई जाती है।